ये स्कूल में काफ़ी सारे टीचर हैं और बहुत सारे मेम हैं ।

एक तकिए पे सर रख के सोया है।

एक स्कूल है यह स्कूल में --

और यहां का मिस्त्री बहुत ही अच्छा है।

आदमी नहीं आता है यह बहुत ही --

महजिद में सुबह शाम ऐलान दिया जाता है।

यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए --

और ट्यूशन पढ़ रहे है।

यह रूम में एक पंखा टंगा हुआ है।

यह होटल में रहने खाने एवं --

आते ही यहां पे टॉनिक टैबलेट --

यह दुकान बहुत ही बड़ी है।